एक ने व्हाइट कलर की शर्ट पहेनी है ब्लेक कलर का पेंट पहना है दूसरे ने ब्लेक कलर की टी शर्ट पहेनी हैं ऊपर बहोत सारे लाइटिंग लगी हुई हैं।

ये बस है वो येल्लो और ब्लू कलर की है जो व्हाइट कलर से कुछ लिखा हुवा है ऊपर आसमान है और यहाँ पे एक बाल्टी भी रखी हुई है।

यहा पे एक ऑफिस जहा पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं एक आदमी हैं जिस ने अ-ब्लू कलर की शर्ट पहेनी जो की रेड कलर की चेयर पे बेठा हैं एक मेज यहा पे है वुडेन की और यहा पे--

ये एक बस है जिसमें नीचे की और एक ग्रीन कलर की मैट बिछी हुई है आसपास अगल-बगल में सीटे है जो की सीटें जो है वो की अ-ब्लू कलर की है और उसपे--

यहाँ पर कुछ एक बाजार हैं और यहाँ पे कुछ मछलिया बिछ रही हैं यहाँ पे एक महिला हैं जो की ब्लू कलर की साड़ी पहनी हैं और एक--